मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है। गेट पर स्वर्ण जयंती जिला केन्द्रीय पुस्तकालय बेगुसराय लिखा दिखाई दे रहा है। आधा गेट वाइट और आधा गेट रेड दिखाई दे रहा है।

एक लाइब्ररी दिखाई दे रही है लाइब्रेरी में कलर्ड छोटे-छोटे दिखाई दे रहे हैं। जिनमे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन ऐसे क्रम दिखाई दे रहे हैं।

एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है और लाइब्रेरी मे सामने ग्रीन -ग्रीन ए कुछ लगा दिखाइ दे रहा है। सामने टेबल और दिखाई दे रहे हैं।

पीछे तीन लड़कियां कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई दे रही है| दीवाल पर कुछ लिखा दिखाई दे रहा है| एक सौ एक टेबल पर थर्टी थ्री लिखा दिखाई दे रहा--